ये फोटो में एक क्लॉथ स्टोर है।

उसके साइड में वहां से पुरा गोबर किया हुआ है।

बुद्धा के ऊपर बीच में एक बड़ा सा लाइट है।

बोर्ड की साइड के पौधों को बहुत अच्छी तरह से बैडमिंटन किया हुआ है।

कुछ सोलर पोस्ट है कुछ छोटे छोटे येलो कलर का पेड़ है।

ये फोटो में एक दुकान है।

दो चेयर और एक टेबल है।

घर के पीछे बड़े बड़े पहाड़ और जंगली दिखाई दे रहा है।

प्लास्टिक में और मिर्चा भी दिखाई दे रहा है।

घर के अंदर पूरा जंगल भर गए है।

शर्मा ऑडियो लिखकर छोटा सा पोस्टर स्पीकर के बीच में एक ठो है।

वॉल पूरा टीना का बना हुआ है।

एक चिड़िया भी है जो की सुखा वाला पेड़ में दिख रहा है।

आगे में कपबोर्ड के ऊपर कुछ गारी में डालने का सामान भी दिखाई दे रहा है।

और लाल रंग से उसका टाइप्स लिखा हुआ है नीचे में--

नीचे में एक साइन बोर्ड दिखाई दे रहा है।

ये फोटो में एक घर है घर के अंदर एक नया गाड़ी है।

बकरी का कलर सफेद और ब्लैक मिक्स है।

पीछे साइड में कुछ और बकरियां भी दिखाई दे रहा है।

ये फोटो में एक बड़ा सा रूम है।

अंदर में कुछ चेयर्स भी दिखाई दे रहा है।